यह एक हॉल है जिसमें फैन सब लगा हुआ है और लड़की लोग डान्स कर रही है।

यहाँ पे घर है तो नहीं है बट यहाँ पे खाली जगह है जो कि--

एक यह एक फी अ फील्ड है पार्क है जो कि पेड़ वो सब भरा पड़ा है और --

यह एक बिल्डिंग है और इस्पे कोई प्लास्टर -व्लास्टर नहीं है। कलरफूल है लेकिन लाल कलर का और पीला कलर है और कहीं पेंट ही नहीं है।